बहुत सारे तार भी ब्लैक कलर के लटकते हुए दिख रहे--

ढेर सारी लेडिस भी दिख रही हैं और ढेर सारे आदमी भी दिख रहे--

हमने एक रेड कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक आदमी पैंट शर्ट पहने खड़ा हुआ है।

बाकी सब ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए खड़े हैं।

व्हाइट कलर की सीलिंग भी बनी है छत पे।

इसके अंदर एक फ्रिज व्हाइट कलर की खड़ी है सामने वाल--

छोटी सी फ्रिज लगी है जिसके अंदर कैडबरी की चॉकलेट रखी है।

जो काला है और व्हाइट पट्टी व्हाइट है इसकी।

काउंटर यहां ब्लैक कलर का रखा हुआ है जिसके ऊपर गिलास और बाकी सामान रखा--

पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है एक लेडिस भी खड़ी है जो स्कूटी को ले खड़ी है।

और इसमें रेड कलर के सेब भी दिख रहे हैं।

और अन्नानास भी दिख रहा है और आम भी दिख रहा है।

इसके अंदर छत पे सीलिंग दिख रही है वाइट कलर की जो डिजाइन दार है।

और के_एफ_सी भी लिखा हुआ दिख रहा है पूरा बोर्ड भी दिख रहा है।

और एक लेडिस भी दिख रही है एक जेंट्स भी दिख रहा।

इसके अंदर ऊपर वाल सीलिंग बनी दिख रही है जिसमें एक लंबी सी लाइट लगी हुई है।

अब पिंक कलर के फूल भी बहोत सारे दिख रहे हैं।

उसी के गेट के उपवल एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

एक पेट्रोल टंकी नीली अ पीली कलर की दिख रही है।

और बाहर की ओर पेड़ भी दिख रहे हैं जो हरे हरे हैं।

सामने वॉल फर्नीचर की दीवाले उठी हुई दिख रही है जिसमें शीशा भी लगा हुआ है।

अंदर रेड और ब्लैक कलर के गमले जमीन में रखे हुए दिख रहे हैं जो लोहे की टेबल पे रखे गए--

ये आदमी भी पीछे वॉल खड़े हुए इसके अंदर --